और बहुत से टायर भी नजर आ रहे है अलग अलग साइजेज के।

जहां पे बहोत सारे व्यक्ति और एक महिला खेती करते हुए दिखाई दे रही हैं।

और इस घर के बालकनी एरिया में टेबल और चेयर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और काउंटर पे बैठा एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है और फिश टैंक भी दिखाई दे रही है।

जिन बोर्डों के नीचे नंबरिंग की हुई नजर आ--

जिस रेस्टोरेंट में बहोत सारे चेयर और टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस स्टेशनरी शॉप में बहुत सारे शेल्फ बनाकर बुक और कॉपियां रखी हुई नजर आ रही है।

एक ब्लैक कलर की टूल भी नजर आ रही है और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक बहोत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक वेडिंग मैरिज हॉल के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

एंट्री पॉइंट दिखाई दे रही है और उस एंट्री पॉइंट को बहोत ही खूबसूरती से फूलों से डेकोरेट किया गया है।

और एक रेड कलर की बिछी हुई मैट भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे डॉल्स भी रखे हुए हैं कुछ रेसिंग कार्स भी रखी हुई हैं।

और कुछ चेयर भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

छोटे छोटे घास भी नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक बैंक के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

जिस स्टेशनरी शॉप में बहुत सारी कॉपी किताब रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा--

उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक पेन पकड़ रखा है एक कैलकुलेटर भी नजर आ रही--